एक लड़की है जो अपना बैग टांगते हुए कार की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है यहां पे नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है।

और उसके पीछे की तरफ नदी मे एक नांव भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसपे ऑरेंज कलर की ट्यूब भी बंधी हुई नजर --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

रेस्टोरेंट की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का खाना मिला मिलता है।

लकड़ी की सीढ़ियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ नजर आ रहा है।

और एक रिक्शे वाला भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये किसी रेस्टोरेंट के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक कांच का गेट बना हुआ है।

एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सीढ़ियों पे कुछ गमले भी पड़े हुए नजर --

बहोत सारी सफेद कलर की पर्दे वाली कुर्सियां रखी हुई है जिनपे पीले कलर का रिबन बंधा हुआ नज़र --

सामने स्टेज पे एक सफेद कलर का सोफा भी रखा हुआ नजर आ रहा है और खिड़कियों पे परदे लगे हैं।

गेट के पास में एक बड़ी सी चद्दर की टीन शेड भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

होटल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारा--

ये किसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे एक बड़ी ऊंची सी टेबल रखी है जिसपे ब्राउन कलर की गद्दी रखी हुई नजर --

मैरिज गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

ये किसी स्टेज की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की --

धोती और कुर्ता पहना है उन वो और पगड़ी बांधी हुई है वो कुछ स्टेज पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं।